कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं यहाँ एक कैंप लगा है।

इस चित्र में हमें एक केक की दुकान दिख रही है।

इस चित्र में हमें एक तालाब दिख रहा है।

ऑरेंज सूट पहना है।

एक हैंडबैग दिख रहा है।

एक लच्छेवाला खड़ा हुआ है।

आसमान में बादल हैं।

बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

एक डलिया दिख रही है जिसमें चारा भरा है।

एक पेड़ नजर आ रहा हैं।

इस चित्र में कृति योगा क्लासेस दिख रही हैं।

काफी सारी लड़कियां नजर आ रही हैं।

इस चित्र में होटल जेशरी पैलेस दिख रहा है।

कुछ ऐ_ सी_ के डक दिख रहे हैं।

आसमान में बादल दिख रहे हैं।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक आदमी का हाथ दिख रहा है।

इस चित्र में हमें गाड़ियां नजर आ रही हैं।

कुछ तालाब दिख रहे हैं।

बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं।

इस चित्र मे हमे एक खेत--

इस चित्र में भोपाल लाइब्रेरी दिख रही है।

इस चित्र में एक शोरूम --

उसने नीला टब पकड़ा हुआ है।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

आसमान में बादल दिख रहे हैं।

एक हरी कुर्सी दिख रही है।

दो औरतें नजर आ रही हैं।

इस चित्र में काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं।

जिसने पीली साड़ी पहनी है।

यह एक किचन बना हुआ है।